और अ यहाँ पर बहुत सारे फूल है अ गेंदे की फूल है अ पीले कलर के अ रखॆ हुये हैं ।---

और अ भोलेनाथ की मूर्ति के सामने से कुछ अ स्टेयर वगैरह सीढ़ी वगैरह लगी हुई है सामने कुछ गार्डन पड़ा हुआ हैं।

अ कुछ पहाड़ी ह दिख रही है पर्वत टाईप का दिख रहा है जिस पर कुछ पेड़ -पौधे लगे हुए है तो जिसके कारण से वो हरा- हरा दिख रहा हैं ।

और जोकि पूरी तरह से मिट चुका है कुछ दे छोटी-छोटी -सी कु --

और गार्डन के चारों साइड से एक बाउंड्री की हुई है जॊकि अ बाउंड्री की हुई है ब्लू कलर स्काई ब्लू कलर में है कुछ पेड़े लगे हुई हैं ।

कार्यालय बना हुआ है जो की बहोत बड़े स्पेस में फैला हुआ है कार्याला बना हुआ है।

पड़ पारभत्तो की अ पत्थरॊ की चट्टाने रखी हुई है कुछ पेड़ लगे हुई है और इसका हैं

आ जिसमें बहुत सारे फ्रूटस वगैरा रखे हुए है।

और पेड़ के उस साइड कुछ दुकाने लगी हुई है जिसके बाहर कुछ चेयर वगैरह टेबल वगेरा रखी हुई है कुछ लोग खड़े है वहाँ --

और ये बाउंड्री के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है जोकि रास्ते के किनारे से खड़ी हुई है एक रास्ता गया है।

अ दूसरे पार्ट्स में बड़े -बड़े हेयर किये हुए है और छोटे -छोटे हेयर में कुछ डिज़ाइन दी --

यहाँ पर एक स्लिप लेक्सों है जिसमे नीचे की साइड में एक ऑफिस बना हुआ है।

और वहाँ से बहुत भा पानी बह रहा है गेट --

और जिसमें कोई यहाँ पर एक एंट्री गेट है जो की मैन एंट्री गेट है बनाया है जैसे--

और नृत्य वगैरह की पोजीशन में है मुद्रा में है डांस कर रही है कुछ --

अ एक सा डेकोरेट किया बहुत सारे लोग है और लाइट वगैरह --

अराउंड शेप में ओपन गेट लगे हुए है अंदर साइड में बहुत सारे पेड़ - पौधे लगे हुए है।

और यहाँ पर एक लड़का है जो की दूल्हा की पगड़ी लगाया हुए है बच्च--